यहाँ का पानी ये होता है देखने में।

जिम सिखाने का काम करता है और बहुत ही अच्छा-अच्छा टेक्नीक से जिम सीखाता है।

यह डिज़्नी लैंड मेला बेगुसराय का है देखिये।

उस जगह लोग नैया से ही आने-जाने का काम करते हैं इसपे --